यहाँ इमेज एक सुपर मार्केट का है सुपर मार्केट के ऊपर बोर्ड में--

यहाँ इमेज एक जिम का है एक एक्सर साइज करने की कुछ मशीने रखी दिखाई दे रही है।

इस इमेज में रोड दिखाई दे रही है रोड में कुछ कार खड़ी हुई है कुछ बाइक्स है और--

सामने में कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे है और बहोत सी बाइके खड़ी हुई भी दिखाई दे रही--

जेन्स की है कुछ लेडिस की दिखाई दे रही है जो आपस--